ये एक लड़का खड़ा हुआ है। आ रहा है और अं दो सिलेंडर टंगे हुए हैं। ऊपर एक लाइट लगी हुई है। मकान हैं।

पीछे की लाईटें हैं।